हमें जो एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

उसके सामने में जो कुछ सोने के लिए और एक टेबल भी दिखाई दे रहा है पानी का कलर जो ब्लू में है।

यहां में जो घर का ऊपर में वो लोग काम कर रहा है एक बेंचा भी दिखाई दे रहा है और ढलाई कर रहा है।

यहां में जो कुछ पैकेट पैकेट बना के है वो भी अच्छा से अड़ेंस करके रखा हुआ है।

पिलर लोग भी दिखाई दे रहा है कुछ फ्लावर पॉट्स भी है और कुछ छोटा छोटा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

में जो दो खिड़की दिखाई दे रहा है वो दोनों में जो कुछ शीशा का इस्तेमाल किया है।

जो घर का अंदर का है ये में जो दो आदमी दिखाई दे रहे हैं वो दोनों जो बस पेन दिखाई दे रहे हैं।

सामने मे भी कुछ अलमारी जैसा भी दिखाई दे रा है।

और घर का साने मे जो एक सीढ़ी स्टेप है सीढ़ी स्टेप में जो एक लरका भी दिखाई दे रहा है।

बाइक भी दिखाई दे रहे है वो लोग कुछ भी बिक्री भी कर रहे हैं।

घर भी दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रीट लाइट भी दिखाई दे रहा है एक पोल भी है उसमें कुछ तार भी आ के है।

एक रास्ता भी है एक गाड़ी दिखाई दे रहा है उसका सामने में जो कुछ केला का पेर भी दिखाई दे रहा है।

यो एक बाग है और बागा अंदर में जो एक हाथी का पुतला दिखाई दे रहा है।

ये हमें एक घर दिखाई दे रहा है वो जो त्रिपाल से बनाने वाला है।

इसमें जो वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं।

कुछ घास भी दिखाई दे वह जो ग्रीन कलार में है एक बरा सा हल भी है।

ऊपर में जो एक स्टेच्यू दिखाई दे रहा है पीछे में जो बहुत सारा पेर पौधा भी है।

डब्बा भी दिखाई दे रहा है।